और फिल्म वगैरा जो रिलीज होता है उसकी फोटो भी लगाई हुई है और यह एक औरत बैठी है जो बेच रही है बुक को।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

ये कोई स्कूल हैं जिसमें सारे मैडम एक तरह का साड़ी पेहनी हैं और एक लग रहा हैं की प्रिंसिपल हैं जो सफ़ेद साड़ी पेहनी हैं।

ये लोग फोटो भी खिंचवाएं हैं बहुत ही अच्छा --

यहाँ पिज़्ज़ा वीजा मिल रहा है यहाँ एक छोटा सा रेस्टुरेंट है इसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है।